यहाँ पे एक पार्क दिखाई दे रहा है जहा पर एक ढलाई वाला रास्ता दिखाई दे रहा है उसके सामने एक--

बैठने का जगह दिखाई दे रहा है लोहे और सिमेन्ट में कठोर सिमेन्ट देके बना हुआ है यहाँ पे एक सेठ दिखाई देरा है ।

ते पास में एक और बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है सामने बड़ा सा माट दिखाई दे रहा है जो मिटी का माट है यहाँ पे खेलने का--

गाड़ी के सामने में बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई देरा है ऑफ वाइट कलर का वाइट कलर का यहाँ पे इस साइड में कुछ प्लेटफॉर्म है यहाँ पे--

यहां पे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा होटल टाइप का उसका सामने एक प्लेटफार्म टाइप का जगह है उसके पास में एक मार्ट है घासो में बड़ा हुआ है हरा कलर का।

डेल कर के होल्डिंग लगा हुआ है नीचे में भी बिल्डिंग के माथे में भी यहाँ पर सामने में एक हरा कलर का माठ है जहाँ पे हरा --

कुछ लड़की लोग ए ड्रेस पहन के नृत्य कर रहे है यहाँ पे बैठ के एक हाथ में बुके लेके बैठा है वो लोग पोज देक --

यहाँ पे रस्ते के पास एक सुकन दिखाई दे रहा है जिस का नेचुरल ट्विस्टर बोझनालय निवास ये--

यहाँ पर एक सीडी दिखाई दे रहा है प्लेटफॉर्म में सरफ़ाइद कला के पास में एक लड़का खड़ा है मोबाईल फेकरा है यहाँ पे पास में ----

ये एक पेट्रोल पाम है जो एच_पी का पेट्रोल पाम है एच_पी का होल्डिंग लगा हुआ है ऊपर में अभी पेट्रोल पाम --

ये एक कंस्ट्रक्शन एरिया है जहा पे मिटी का जगह है जो मिटी खोद के यहाँ पे--

मकान तीन लेबर लोग यहाँ पे काम कर रहे है पास में भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो के जाता है बिल्डिंग --

यहाँ पे आदमी और औरत लोग बैठा है अभी शाम होने वाला है सूरज जो है वो अस्त होने वाला है।

घास है यहां पे साइड में कुछ ढलाई करके रास्ता बना हुआ यहां पे एक लुगाई का गेट दिखाई दे रहा है राउंड करके उसमे भी कुछ पेड़ वगेरा है ।

यहाँ पे पाथ हैं बड़ा सा जहाँ पे सामने में ढलाई कर के रास्ता इधर से उधर जा रहा हैं और रास्ते पे बाए तरफ कुछ बड़ा बड़ा पेड़ हैं सामने--

बाइने तरफ एक मार्ट है मार्ट में छोटा छोटा पेड़ है मार्ट बड़ा पास में भरा हुआ है।

यहाँ पे एक बाइक खड़ी है साइड में यहाँ पेड़ के पीछे ऐ-एक बड़ा वाइट कलर का बिल्डिंग है।

ये एक फूलो का बगीचा है जहा पे फुल वगेरा घास वगेरा ये सब बिक--

का है बाकी चामीनग यहाँ पे एक रैलिंग कर के गया है जहाँ पे बहुत सारे टब वगैरा सजा के रखा है प्लास्टिक का --

पास में बड़ा बड़ा पेड़ है यहाँ पे कुछ अः बसने का जगह है यह एप साइकिल दिखाई दे रहा है।

एक दुकान दिखाई दे रही है जो बुक का दुकान है बुक का सामान मिलता है बहुत सारी यहाँ पे रैक है बड़ा बड़ा --

एक बंदा और एक बंदा के फ्रेंडो में हाथ देखे खड़ा हैं और उन लोगो के पीछे एक नाव हैं नाव अभी ड़ा हैं साइड में उस साइड --

यहाँ पे छियानबे कुछ आदमी औरत लोंग मम चदर ढक के सो गए है रात का सीन है लाइट जल रहा है ।

एक दुकान है दुकान ओपन यहा पे टेबिल में--

टेबल के ऊपर बहुत सारे नन डिब्बे में मम समान वगैर रखा हुआ है एक आदमी बैठा है चेयर में।

ये एक टेलीकॉम शॉप है जो जिसका नाम है मम मम अच्छा बड़ा टेलीकॉम --

काटना है ई_एम_आई का ई_एम_आई का सिम जादातर मोबाईल मिलता है यहाँ पर पूरे में एक पे टीएम का एक होल्डिंग लगा हुआ है।

यहाँ पे एक बड़ा सा चार्जस दिखाई दे रहा है मेहरून कलर का चार्ज है दो तरह चार्जिंग चार्ज के ऊपर घुस लगा हुआ है एकदम टॉप मे--

सीएट का जो शोरूम है उसका रिसेप्शन है यहां पे पास में बैठने का कुछ कुर्सी वगैरा रखा हुआ है।

ये एक हॉस्पिटल का रिसेप्शन का चित्र है जहा पे रिसेप्शन में पोडियम है ब्लैक कलर का है यहां पे बोहत सारे फाइल रखा हुआ है रेग में --

लगातार दिखाई दे रहा है और जो आगे जुकने वाला है।

यहाँ मछली है बहोत सारी डिफ़्लेट डिफ़्लेट मछली है यहाँ कुछ का अः बास्केट में कुछ का--

ये एक दुकान दिखाई दे रहे है जिसका नाम है गुब्बा गुब्बा यहा पे--

पानी का पानी में डूबा हुआ है वो उस तरफ मु करके लेता हुआ है उस तरफ दो पहाड़ दिखाई दे रहे है वो पहाड़ देख रहा है आसाम पूरा वाइट कलर का है।

यहाँ पे एक बंदा खड़ा है वो मुंह लटकाके वहाँ पे एंजिन मे कुछ काम कर रहा है वो रिपेयर कर रहा है करता--

यहां पे एक रोड दिखाई दे रहा है बड़ा सा यहां पे कुछ आदमी लोग बंदा लोग पैदल जा रहा है कुछ फोन में बात करते-करते जा रे है यहां पे कुछ सारे --

वो बहोत बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है नदी के अंदर में साइड में जो नाव है नाव दिखाई दे रहाहै--

पिले कलर की साड़ी पहन क खड़ा है उसके बाजू में और एक मैंनिक्विन लहंगा पेहन के खड़ा है सामने में कयू _आर कोड --

यहाँ जिसमे पेमेंट करने वाला है पास में एक रैक में कुछ सामान रखा हुआ है और ड्रेस का सामान है।

यहाँ पे एक घड़ में एक देबता का कुछ समूर्ति रखा हुआ है सजा के ऊपर से नीचे तक नीचे घाट भी पता हुआ है ।

सामने मे और भी बड़ा बड़ा पेड़ है उसके पास मे एक बड़ा सा जोअ ग्रीन कलर का अ --

यहाँ पे एक बड़ा स बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जहां पे एक बड़ा सा व्हाइट कलर का कोडिंग है जिसमे लिखा है ओपन इन शॉर्टली बॉडी जिम ।